इकदम सामने पानी दिख रहा है जिससे हम यह पता लगा सकते है कि यह एक बाड़ पीड़ित क्षेत्र है जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है।

क्रिसमस डे का है। जहाँ पे लोग प्रार्थना कर रहें --

यह तस यह तस्वीर काफी हरियाली भरी है जिससे हमें यह पता लगता है कि यह एक गाँव की तस्वीर है जहाँ पे एक फसल बोया गया हैं।

एक पुलिस वाला खड़ा हो के पहरेदारी कर रहा है।

सजावट यह देख के लग रहा है की यह एक इसाई धर्म के त्यौहार क्रिसमस की तस्वीर है।

और लोगो की चकाचक भीड़ यह देख के हम यह कह सकते है की यह किसी बड़े मॉल की तस्वीर है। यहाँ पे लोग बाजार करने आये है।

सत्यमेव जयते श्रमेव जयते।

यह देख के हम यह कह सकते है कि यह किसी भी स्कूल का तस्वीर है और यह तस्वीर गेट पे ली गयी है।

महिंद्रा बोलेरो पर इस बोलेरो को देखके लगता है कि यह बोलेरो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं।

नेपाल का झंडा दिख रहा है ये हम कह सकते है की ये तस्वीर नेपाल का या फिर नेपाल भारत बॉर्डर का हो सकता है।